काफी बड़ी-बड़ी मच्छियाँ हैं। देखो ये कितनी बड़ी मच्छी भी हैं छोटी मच्छी भी है। सभी तरह के मच्छी हर तरीके की मच्छी हैं यहाँ पर।

ये ओपो कंपनी का यहाँ पर ऑफिस है काफी सुन्दर ऑफिस है। नीचे भी पत्थर बिछा हुआ है काफी इसके जो वो --

छोटे बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं। ये तालाब काफी साफ़ है।

काफी पार्क में ठंड भी रहेगी। गर्मीयो के मौसम में बोहोत फायदा देगा ये।

काफी बड़ा शीशा लगा हुआ है। ये नाइ जो है एक लड़के की कट्टिंग कर रहा है।

देखो यहाँ कितने बड़े-बड़े पत्थर हैं। पथरो की गुफा से बनी हुई है काफी मज --

यहाँ एक काफी अजीबो गरीब सर्कस है देखो।

लड़के लड़कियां देखो कुछ एक टेबला पर बैठे हुए है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने खाने पीने की चीजे मँगा रहे है।

द्वारा ही गंगा जी में घूमा जा सकता है काफी दूर तक।

देखो कार के दो पहिये भी डूब चुके हैं।

संतरा है मौसमी है तरबूज है खरबूजा --

देखो ये जो सामने मकान बना हुआ है। वह काफी बड़ा बना हुआ है काफी बड़ा अच्छा उचा बना हुआ है।

उस पे जो हैं खम्बे लगा दिए गए हैं लाइटो के।

देखो ऊपर को भगवान जाने कैस-कैसा तरीका है इनका।

अगल ही तरीका है चारपाई बुनने का इनका --

काफी घूम फिर के काफी अच्छे डीजाइन में बने हुए यहाँ पर।